और इसमें एक मोटरसाइकिल भी खड़ी है।

इस ढाबे के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

पिकनिक मनाते हुए भी दिख रहे हैं।

वे सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली है।

यह एक की तस्वीर है।